इस फोटो मे मुझे दिन का समय दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो मे एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है रेड कलर का मुझे इस घर पे एक लाइट लगी दिखाई दे रही है।

यह फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो मे मुझे काले बादल नज़र आ रहे है आसमान मे मुझे एक नदी दिखाई दे रही है इसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो मे मुझे एक खेत नज़र आ रहा हैजो की हरे रंग का दिख रहा है जो हरे रंग की ग्रास नज़र आ रही है।

ये फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो मे मुझे एक हॉल नज़र आ रहा है जोकी व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है मुझे इस हॉल मे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और दो खिड़किया नज़र आ रही हैं।

मुझे इस घर पे कुछ खिड़कियाँ नज़र आ रही है मुझे एक टॉवर दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ वायर लगे दिख रहे है मुझे घर के बाहर कुछ बोरिया नजर आ रही है ।

यह फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो मे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जोकि हरे रंग का दिख रहा है।